और एक गाड़ी पार्किंग भी नजर आ रहे है जिसमें दो गाड़ी पार्क किए गए हैं।

इसमें एक व्यक्ति फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहा है ।

कुछ व्यक्ति सब्जी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

इस ए_टी_एम का नाम एच_डी_एफ_सी बैंक है।

ये व्हाइट कलर का फैन लगा हुआ भी नजर आ रहा है।

वा पे बहोत सारी मछलियां बड़ी बड़ी भी नजर आ रही है।

यहां पे एक बगल में कपड़े के दुकान का भी दृश्य है।

यह एक दूध का डेयरी का दृश्य है जो की देखने में बहुत ही बड़ा शॉप नजर आ रहा है।

यहां पे बारिश होती हुई नजर आ रही है यहां पे एक तिरपाल लगा हुआ नजर आ रहा है।

के बाहर एक कार खड़ी नजर आ रही है और इसमें दो सीढ़ियां भी नजर आ रहे हैं।

यह कार शोरूम का दृश्य है जिसमें बहुत सारे कार खड़ी हुई नजर आ रही है।

यहां पे शीशे से बने दरवाजे और शीशे से बने खिड़कियां भी नजर आ रही है।

इस मूर्ति के बगल में ये घर भी बड़ी सी नजर आ रही है।

यह एक इलेक्ट्रिशियन का दुकान का दृश्य है जिसमें बहोत सारे इलेक्ट्रॉलीक समान नजर आ रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे नर्स और बहोत सारे व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में वाइट कलर के फैन भी नजर आ रहा है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है जिसके सामने एक पार्क भी नज़र आ रहा है।

इस बिल्डिंग के बगल में बहोत सारे पेड़ पौधे और फ्लावर्स भी नजर आ रहे हैं और एक रोड भी नजर आ रहा है।

बहोत सारे फ्लॉवर्स और बहोत सारे लाइट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है ।

एक रिमोट भी नजर आ रही है यहां पर दो वॉलपेपर लगे हुए भी नजर आ रहे हैं।